इस मंदिर में जो मूर्ति है वो भी बहुत बड़ा है ये और बहोत ही ख़ूबसूरत है इस मंदिर को गोल्डन --

ये इस बिल्डिंग को फूलों से सजाया गया है गेट को भी फूल सजाया गया है।

और इस को चलाने में बहुत ही मजा लगता है यह पा यह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा --

कुछ बच्चे यहाँ पर ऊपर में चड़कर खेल कर रहे है कुछ फिसल पट्टी से फिसल रहे है कुछ बच्चे सीढ़िया चघ चड़ रहे है।